Javaजावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है
और कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबंटु वर्जन 1110 ओएस जावा डेवलपमेंट किट 16 इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए
कि इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबधित ट्यूटोरियल के लिए दर्शाई गयी हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpwwwspoken tutorialओआरजी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है
क्लास के लिए विभिन्न कंस्ट्रक्टर्स परिभाषित करें
वे पैरामीटर्स के प्रकार या नंबर में भिन्न होते हैं
अब देखें कि कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कैसे करें
इक्लिप्स में मेरे पास दो वेरिएबल्स और एक मेथड के साथ क्लास स्टूडेंट है
पहले एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएँ
अतः टाइप करें स्टूडेंट पेरेंथीसेस में इंट नंबर कॉमा स्ट्रिंग the name कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें roll number इस इक्वल टो नंबर
और नामे इस इक्वल टो the name अतः हमारे पास दो पैरामीटर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टर है
इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें
अतः नामे मेथड में टाइप करें न्यू स्टूडेंट पेरेंथीसेस सेमी कोलोन हम एक एरर देखते है यह कहती है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट इस अनडिफाइंड
यह आसान है क्योंकि हमने दो पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर परिभाषित किया है
और हम बिना पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं
अतः हमे आर्ग्युमेंट पास करने की आवश्यकता है
अतः पेरेंथीसेस में टाइप करें 22 कॉमा डबल कोट्स में राम
हम देखते हैं कि एरर ठीक हो गई है
मेथड को कॉल करें
अतः न्यू से पहले टाइप करें स्टूडेंट एस इस इक्वल टो न्यू स्टूडेंट
अब ऑब्जेक्ट एस का उपयोग करके मेथड studentDetail को पुनः कॉल करें
प्रोग्राम सेव और रन करें
हम आउटपुट देखते हैं 22 और राम अब पैरामीटर के बिना कंस्ट्रक्टर परिभाषित करें
अतः टाइप करें स्टूडेंट पेरेंथीसेस
कर्ली ब्रैक्ट्स में roll number इस इक्वल टो 0
और नामे इस इक्वल टो डबल क्वोट्स में हाइपेन बिना नाम का
अतः हम बिना पैरामीटर्स के कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते है
अतः टाइप करें स्टूडेंट एस1 इस इक्वल टो न्यू स्टूडेंट पेरेंथीसेस सेमीकॉलन
इस समय हमें कोई एरर नहीं दिखी क्योंकि हमने पैरामीटर के बिना कंस्ट्रक्टर परिभाषित किया
फिर एस1 डॉट स्टुडेंटडेटेल
प्रोग्राम को सेव और रन करें
अतः आउटपुट में हम देखते हैं ज़ेरो और दश और डिफॉल्ट कंसट्रक्टर कॉल होता है
यह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है
हमारे पास भिन्न पैरामीटर के साथ दो कंस्ट्रक्टर हैं
दोनों कंस्ट्रक्टर के समान नाम हैं
अतः पैरामीटर के नंबर और टाइप पर आधारित कंस्ट्रक्टर कॉल होता है
अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का लाभ देखें
मानिए कि अब हम दो पैरामीटर्स के साथ एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं
अतः टाइप करें स्टूडेंट s3 न्यू Student अब पेरेंथीसेस में मानिए कि मैने पहले नामे आर्ग्युमेंट और फिर रोल नंबर प्रविष्ट किया
देखें क्या होता है
अतः डबल कोट्स में राजू कॉमा 45 हम एक एरर देखते हैं जो कहती है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट विथ थे पैरामीटर स्ट्रिंग कॉमा इंट इस अनडिफाइंड
अतः कंस्ट्रक्टर को परिभाषित करें
अतः टाइप करें स्टूडेंट पेरेंथीसेस में स्ट्रिंग the name कॉमा इंट r no अतः यहाँ पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है और दूसरा पैरामीटर इंट है
फिर कर्ली ब्रैकेट में roll number इस इक्वल टो r no और नामे इस इक्वल टो the name प्रोग्राम सेव करें
अब हम देखते हैं कि एरर ठीक हो गई है
मेथड को कॉल करें
अतः एस3 डॉट स्टुडेंटडेटेल
प्रोग्राम को सेव और रन करें
अतः हम आउटपुट देखते हैं 45 और राजू अतः यहाँ हम देखते हैं कि जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं
हम पैरामीटर्स के बारे में परेशान नहीं होते हैं जो हम पास कर रहे हैं
यह आसान है क्योंकि हमने भिन्न पैरामीटर्स के साथ कई कंस्ट्रक्टर परिभाषित किये हैं
अतः सही कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है
इसलिए अब हम एक कंस्ट्रक्टर परिभाषित कर सकते हैं जो केवल एक पैरामीटर लेता है
जो रोल नंबर है
अतः टाइप करें स्टूडेंट पेरेंथीसेस में इंट नुम
कर्ली ब्रैकेट्स में roll number इस इक्वाल्टो नुम
और नामे इस इक्वल टो नो नामे
अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें
अतः टाइप करें स्टूडेंट एस4 इस इक्वाल्टो न्यू स्टूडेंट इस समय हम एक सिंगल आर्ग्युमेंट पास करेंगे
अतः 61 पास करें
फिर एस4 डॉट स्टुडेंटडेटेल प्रोग्राम को सेव और रन करें
अतः आउटुपट में हम देखते हैं रोल नंबर के लिए 61 और नामे के लिए नो नामे
जैसे कि हम देख सकते हैं सही ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब नया निष्पादित होता है
पैरामीटर्स के आधार पर उल्लिखित होता है कि सही कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो गया है
इस तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में
कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का उपयोग
स्व मूल्यांकन के लिए एम्प्लॉयी क्लास के लिए मल्टिपल कंस्ट्रक्टर बनाएँ और कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करें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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं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
धन्यवाद